यहां पे एक नाव है जो ग्रीन कलर की है उसके ऊपर दो बंदे--

कुछ लोग प्लेन ते बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ लोगों ने ग्रीन कलर दा जैकेट पहना हुआ है।

बहोत बड़ी लाइट चालू रखी हुई है।

यहां पे एक खुला मैदान दिख रहा है जहां पे बहोत सारी मट्टी है।